इन्होंने अपने हाथ में एक फोन लिया हुआ है फोन का कलर ब्लैक है।

यह दृश्य एक बहुत बड़ा हॉल का है।

ऊपर वाले सीलिंग का कलर भी वाइट है।

नीचे के जमीन पे छोटे छोटे घास जम चुके हैं।

सामने में दो चार घर है।

ऊपर के सीलिंग का कलर ग्रे है।

आगे में एक साइकल लगाया हुआ है।

जिसका कलर रेड और वाइट है।